हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे | इसमें खम्भा दिखाई दे रहा | इसमें वायर भी दिखाई दे रहा है | इसमें छोटे - छोटे हरे कलर के पत्ते दिखाई दे रहे ।

स्टील के घमेरे दिखाई दे रहे। इसमें वायर दिखाई दे रहे। इसमें नापने का बोर्ड भी दिखाई दे रहा।

मेम सा दिवाल दिखाई दे रही है | दीवाल कलर वाईट दिखाई दे रहा है | इसमें--

शर्ट दिखाई दे रहे है इसमें बिल्डिंग और हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे है इसमें सफ़ेद और आसमानी कलर का बादल दिखाई दे रहा है।

मंडा दिखाई दे रहा है मंडे का कलर रेड वाइट दिखाई दे रहा है इसमें --